हमें एक सुन्दर मकान दिखाई दे रहा है उसका एक कमरा भी बना हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर बहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई है जोकि काले कलर की कुर्सियाँ रखी हुई है टेबल भी रखी हुई दिखाई दे रही है और --

बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है वहाँ पर उम्म दुकान के अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई है और --

और कुछ दूरी पर ही बहुत लम्बा पहाड़ दिख रहा है और वहाँ पर हरी भरी झाडियाँ भी लगी हुई है और पेड़े भी लगे हुए दिखाई दे रहै है और सूर्य भी दिखाई दे रहै है और सूरज की बहुत सारी किरणे भी फैली हुई दिखाई--